यहाँ पे एक दरवाजे वगैरह भी बनते है। यहाँ पे लकड़ियों के हवे बहुत अच्छी सी जगह है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लकड़ी के पीसेस काटे जाते हैं।